प्रशिक्षण कार्यालय की बिल्डिंग बोहोत बड़ी दिख रही है। सामने एक पोर्च दिख रहा है। पोर्च के ऊपर --

यहाँ पर एक स्कूल दिखाई दे रहा है। स्कूल में नीचे का फ्लोर --

दिखाई दे रही है एलेक्टोरिन्क शॉप की दुकान की सटर अभी खुली दिख रही है कुछ समान बहार दिख रहा है।